के सामने आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं और पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

ये रोड है रोड के सामने आप देख सकते हैं हिंदी सिनेमा स्किप --

वो सारी आसपास में शायद ये दुकान है और सब दुकानों के बाहर गमले रखे हुए हैं।

बाहर एक जैंट्स खड़ा हुआ है वाइट ड्रेस में और ऊपर पेड़ पेड़ है और ऊपर शायद इधर देख सकते हैं एक अंकल जा रहे हैं।

और आगे आप देख सकते हैं उस गेट से अंदर जो जा रहे हैंकाफी लोग सो ये मंदिर है।

और इधर आप देख सकते हैं इधर लिखा हैसेरा यहां पर तीन जेंस खड़े हुए हैं।

यहां पर आप देख सकते हैं ये एक नई गाड़ी है रेड कलर की फोर व्हीलर है और यहां पर एक लड़का बैठा हुआ है।

बाल्टी पकड़ रखी है बाल्टी में उसने हाथ डाला हुआ है और इधर गाड़ी पे पन्नी वगैरह चढ़ी हुई है।

यहां पर एक दो लोग दिख रहे हैं ज्यादा लोग नहीं है और बहुत बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ है बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं।